रोड पर हमें एक टोल टैक्स बना हुआ नजर आ रहा है।

यह पिक्चर हमें किसी मैरिज पैलेस की नजर आ रही है।

यह पिक्चर हमे किसी ग्राउंड की दिखाई दे रही है।

पास में हमें एक शेड भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें बहोत सारे बच्चे योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह पिक्चर हमें एक झील की दिखाई दे रही है।

हमें एक नदी नजर आ रही है।

पिक्चर हमें किसी मंदिर की नज़र आ रही है।

बाहर एक मोटरसाइकल भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।